बो सदियो पुराना लग रहा है पेड़-पौधे लगे हुए है औ बहोत ही जादा पुराना है।

राहगीर खड़े हुए हैं यहाँ कार दिख रही है बहुत ज्यादा बस स्टैंड में भीड़ दिखाई दे रही है।

ये मंदिर है और आइड साइड में रोड के आइड साइड में बहोत सारे पेड़-पौधे वगैरा लगे हुए हैं एक दम हरे-हरे आसमान दिखाई दे रहा है।

और सामने बन चुका है काँच वगैरा लग चुका है और कुछ-कुछ तैयार हो चुका है और सामने इसके सामने बहुत सारी बाइक खड़ी हुई है --

हमें रोड दिखाई दे रही है। रोड के किनारे पचासो चारसो सात खड़ा हुआ है। यहाँ ठेला दिखाई दे रहा है ठेला एक दम बंद है। जर-जर हो गया।

एए और एकदम बोहोत जादा सामान दिखाई दे रहा है इसमें किराने का।

हमें बहोत जादा लाइटिंग दिखाई दे रही एकदम ऐ ऐ यहां पे स्टेज सजा हुआ है।

बहुत ही अच्छा मॉल है एकदम व्हाइट - व्हाइट पुता हुआ है इसमें और कपड़े वगेरह एकदम सिस्टेमैटिक जमे हुए हैं हैंगर में टंगे हुए हैं ऑफर वगेरह भी लिखा हुआ है।

वो भी हम पैदल चल के आ रही है। कुछ सामान रखा हुआ है। और ये हम बहुत ज्यादा ही साफ-सुतरा रखा हुआ है और सामने कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। कॉन्टैक्ट और --